अलमारी बनाया गया है और उस पे बहुत सारे सामान रखे गए हैं।

जिसे रेड कलर से पेंट किया गया है यहां पे सामने में चार बोर्ड दिख रही है।

यह एक दो मंजिला बिल्डिंग के बाहर का दृश्य है।

यह एक बहुत बड़ी रोड का दृश्य है।

सामने में बिल्डिंग अंडर कनेक्शन बन रही है सामने में एक बोलोरो भी लाया गया है।

सामने में एक एल_सी_डी भी है।